और इसके बैक साइड में एक ग्रास जैसा उसका स्क्रीन लगा हुआ है और ठीक उसके बीच में एक छोटा सा विंडो जहां कि खाना सर्व करता है।

अ इस पिक्चर में एक एक रूम है जिसमें कि अ पीछे में कुछ फोटोज़ अ --

और बीच में कुछ पत्थर वगैरह भी रखे हुए जो कि काफी सुंदर है उसको--

तो और कुछ उनके साथ लोग भी हैं और बहुत सारे यहां पे लेडीज है फिर कुछ ही जेंस दिख रहे हैं।